इसपर लिखा है पोल्ट्री फार्म लड़कड़ा।

दुकान का बाहर का दृश्य है जहां पर एक पोस्टर लगाया हुआ हैं एवं उस पर लिखा है बाबा जनरल स्टोर ।

यहां पर भिंडी एवं गाजर एवं खीरा भी है।

एक पोस्टर भी दिख रहा है तथा यहां पर एक टी_वी भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर दीवाल को क्रीम कलर से पेंट किया गया है।

यहां पर अलग अलग लाइटें भी लगी हुई है।

ऊपर में एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पर लिखा है होंडा --

यहां पर बहुत सारे आदमी बस में चहढ़ रहे हैं।

साइकल को लोहे की मदद से बनाया गया है।

सामने में ग्रीन कलर का अलमारी जैसा कुछ बनाया गया है।

यहां पर दो गाड़िया भी दिखाई दे रही है जो कि ब्लू कलर का है एवं यहां पर बहोत सारे पेड़ है।

यहां पर बहोत सारे सामान भी दिख रहे हैं।

शादी समारोह का दृश्य है जहां पर बहोत सारे टेंट लगा हुआ है एवं टेंट का कलर असमानी एवं व्हाइट है।

यह एक घर का अंदर का दृश्य है जहां पर एक चौकी रखा हुआ है तथा चौकी को लकड़ी की मदद से बनाया गया है।

यहां पे बहोत सारे गेट भी दिख रहे है तथा खिड़कियां भी दिख रही है।

पोस्टर में श्री शुक्ला टेलर्स लिखा हुआ है।

रूम का अंदर का दृश्य है जहां पर लकड़ी की मदद से पलाई को बनाया गया है।

यहां पर बहुत बड़े बड़े मशीन भी रखा गया है।

यह एक हॉल का दृश्य है जहां पर बहुत सारे पंखा लगा हुआ है।

अंदर का दृश्य है जहां पर अलमारी को पलाई की मदद से बनाया गया है।

घर बनने का दृश्य है जहां पर ईंटों की मदद से घर बनाई जा रही है तथा बालू के भी मदद से बनाई जा रही है।